ग्रीन कलर की ग्रीन कलर की बोट में आसमान और पहाड़ नजर आ रहे हैं और आस --

और नीचे की तरफ कुछ मम कच्चा मिट्टी जैसा रस्ता है पीछे की तरफ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

रेक के चारो ओर बुक्स रखी हुई हैं और नीचे की तरफ भी एक बुक्स है और एक कैलकुलेटर रखा हुआ है।

जो की अ लाइट का ही लग रहा है।

शॉप है शॉप में अ मोबाइल की शॉप लग रही है जिसमें काउंटर लगा हुआ है।

एक दूसरा लड़का है जिसने गुफा में जा रहा है पेड़-पौधे नजर आ रहा है पत्थर नजर आ रहा है और पत्थर ही है पत्थर --

पेड़-पौधे नजर आ रहे है और किछ लोग उतर रहे है बस से एक कंटेनर जैसा भी पीछे नजर आ रहा --

यहाँ पर एक झोपड़ी है जिस पर क्रिसचन्स का टेग लगा हुआ है। और --

यहाँ पर कुछ अ हाथ में बच्चो ने येलो कलर का कवच पहना हुआ है कैंडल्स लिए हुए हैं।

कारपेट है जो कि ग्रीन कलर का है स्पीकर है एक ल एक आदमी और एक औरत दोनों गायक कलाकार है ऊपर से ए.सी. है।

यहाँ पर दो टी टू व्हीलर हैं ब्लैक और ब्लू कलर की मिरर दिख रहे हैं ऊपर छपरा दिख रहा है और---